व्यक्तियों के आगे हमें बहोत सारे चेयर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

तरफ हमें नदी और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

रास्ते के बगल में हमें बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के सामने भी बाइक पार्क किया गया है।

अगल बगल में हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

सब महिलाओं ने साड़ी पहना है।

इस तस्वीर में हमें कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक सिंहासन दिखाई दे रहा है।

एल_ई_डी लाइट के बगल में हमें कुर्सी दिख रही है।

एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है।

अगल बगल में हमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

रास्ता में हमें एक आदमी दिख रहा है जो जॉगिंग कर रहा है।

नदी में हमें एक नांव दिखाई दे रही है।

छड़ के ऊपर हमें कुछ पाइपे भी दिखाई दे रही है।

छड़ के ऊपर एक बॉक्स और एक हरे रंग का बोतल भी रखा हुआ है।

मकान में हमें एक बैनर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

हॉल में टाइल्स लगा हुआ है।